ही अच्छा लग रहा हैं साफ सुथरा जगह है।

जहां हम पैसे रख सकते है अगर इस जगह से पैसे गायब हो जाते है तो सरकार हमें पैसे वापस कर सकती है।

ऐसा लग रहा है कि यह सुनसान सी जगह है।

घर की प्लास्टरिंग चल रही है।

ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक बोर्ड लगा हुआ है।